कुछ फूल वाले भी पौधे लगे हुए हैं।

और उसके ऊपर घास उगी हुई है।

बड़े और कुछ छोटे भी है और यहाँ पर--

कुछ फूल वाले भी है और यहां पर बहुत अधिक मात्रा में गमले रखे--

और कुछ और बॉटल्स भी पड़ी है यहां पर--

यहां बहुत बड़े बड़े पहाड़ियां हैं।

यह एक बहुत ही बड़ी नदी है।

जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी है।

अ वहां पर हम बहुत सारे लोग खड़े हैं।

उन के अंदर पूजा कर रहे हैं और कुछ औरतें भी खड़े हैं।